टोपी है सफेद कलर की जीन्स है ब्लू कलर का शर्ट है सफेद कलर की पिंक कलर की कपड़े है चप्पल हैं--